इस सड़क सड़क पर एक डी.जे. खड़ा है। यह एक गाड़ी में लोड है। इस डी.जे. में बहुत --

यह मशीन के द्वारा वेल्डिंग किया जा रहा --

यहाँ पर बहुत से गाड़ी आकर पेट्रोल भरवाते हैं।

यह तलाब में काफी बच्चे नहा रहे।